जैसा कि हम देख पा रहे हैं।

जो डैम का साइड में हैं और पुल के पास में बहोत सारी लाइटे भी लगी गई हैं।

मैदान के अंदर जो एक घर भी नजर आ रहा है।

और व्हाइट कलर का बिल्डिंगस भी नजर आ रहा है इसपे--

ये एक बहोत बड़ी मैदान नजर आ रही है।

यहां पे बहोत सुंदर फूल नजर आ रहे हैं जो हरा और ऑरेंज कलर में है।

और कुछ अलग अलग प्रकार के पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी गाड़ी दिखाई दे रही है।